ये एक बाल की दुकान है इसका नाम न्यू ताज हेयर सैलून है इसके अगल बगल कुर्सी डली हैं जिस पे बच्चे बैठे हैं और घर पे हाथ हाथ धोने के लिए ये --

जो की लाल कलर की ड्रेस पहने हुए हैं लाल और सफ़ेद कलर की ये-ये बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं ये बच्चे सभी छोटे-छोटे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे है।

इसमें साइकिल भी हैं । कई लोग खड़े भी बै खड़े भी हुए हैं। कई लोग बैठे भी हुए हैं और कई लोग घर भी जा रहे हैं। उसके पास एक बड़ा पेड़ भी है।

और इसके बगल मे एक घर भी है और इसके लेफ्ट मे एक गुंबद वो भी लगा हुआ --

अ-अ इसमें घास उगी है बोहोत अच्छी लग रही है देखने मे हरी-हरी और बगल मेल फूल भी लगे हुए हैं और सड़क पे एक इन्सान भी है और मौसम भी बोहोत सुहाना है।